यहाँ पे थ्री डी मुविज़ भी अविलेब्ल है।

हर सन्डे प्रेयर करने जाते हैं। यहाँ पे --

इधर उधर घुमता और नाचता है मजे में एन्जॉय करता है।

बहुत लोग यहाँ पे पड़ते और --

नोट्स और टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे --

ये एक गोरखपुर की एक क्रिश्चन स्कुल की फोटो है।

इस फोटो में छोटे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं।

और यहाँ पे बोहोत एंजोय करते है बच्चे पानी में।

यहाँ से ऑक्सीजन के लोग के हर हॉस्पिटल में जा भेजा जाता है।

ये एक डी थ्री कैफ़े और बेकरी की शोप है।

ये होटल सुबह दस बजे से लेके रात दस तक ओपन है।